यह एक बहुत बड़ा मैदान जैसा दिख रहा है।

चार चक्का गाड़ी भी जा रहा है।

चारो तरफ से हरा-हरा पेड़ और दिख रहा है।

और एक चारो तरफ से जाली लगाया गया है लोहे का --

और यहाँ पे दो गणपति बाप्पा का मूर्ति बनाया गया है और आँख ओ अभी अच्छी तरह से नहीं बना हुआ है।

और ऊपर की तरफ छत बनाया गया है।

रोड पे बहुत सारे बाइक --

ऊँचा जैसे बनाया गया है उसपे पेड़ लगाया हुआ है बहुत सारा और रोड के बीच में एक ब्रीज़ --

रखे गए है और दीवार पर कुछ कैलेंडर वलेन्डर रखा गया है।